पेन पढ़ी हुई दिखाई दे रही एक टीचर साड़ी भी दिखाई दे रही पीछे खिड़की लगी हुई दिखाई दे रही एक खिड़की उनमे से खुली हुई दिखाई दे रही है।

वहां पर दो लोग फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे है बाजू में एक मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर फूलो से डेकोरेशन करी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर अंदर कुछ लोग टेंट में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक अ म कार दिखाई दे रही कार का गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर कार के आए बाजू में कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

ए ए एक लाइट लगी हुई दिखाई दे रही एक सीनरी रखी हुई ई दिखाई दे रही--

मेंन गेट पे फूलों से डेकोरेशन की गई है जिसमें हार्ट बने दिखाई दे रहे हैं यहां पर टेंट में कुछ ए लगे हुए दिखाई दे रहा है अंदर एक हार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा ए--

वहां पर बहुत सारे ए लेडिजे खड़ी हुई है कोई जेंट्स खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल मे बहुत सारे लोग चेअरो पे बैठे हुए दिखाई दे रहे है। यहा पर बा सा लगी हुई दिखाई दे रही है। यहा पर लायटिग जलती हुई दिखाई दे रही है। एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा आ है।

और पीछे लाइट जलती हुई दिखाई दे रही ही है।

एक ट्रैक्टर में एक मशीन में फंसी हुई दिखाई दे रही है यहां पर मशीन पर कुछ लोग बैठे और खड़े दिखाई दे रहे है यहां पर भूसा अ दिखाई दे रहा है।

च्छे ड्राइंग के कटे हुए पेपर डले हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक रेल का पाता दिखाई दे रहा है बाजू में से ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक बिजली का खंबा बड़ा--

कुछ लोग कुछ लेडीज कुछ लड़कियां खड़ी हुई दिखाई दे रही कुछ लोग छाते के नीचे ए खड़े हुये दिखाई दे रहे है।

बाउंड्री के अंदर गिट्टी रखी हुई है यहाँ पर गमलो में फूल लगे हुए दिखाई दे रहा है पानी की शटर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर लोग गिट्टी भर के ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं गि--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

यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है यहां पर ए कुछ बिजली के तार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर कुछ ऑंटीया फोटो खिंचवाती हुई दिखाई दे रही उनके पीछे ए म्म डेकोरेशन करी हुई दिखाई दे रही है ऊपर लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

तीन आदमी बैठे हुए एक आदमी में से लेटा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बड़े-बड़े बिजली इ के खंभे लगे हुए दिखाई दे रहे है यहां पर रेत का ढेर दिखाई दे रहा--